यह फल का दुकान है यहाँ पे देखिऐ।

करके चॉपर मछलियों को कटता है और उनके खून को निकलता है और बेचता है।

बहुत दिन से कुछ साफ-सफई वगेरा नहीं किया गया है।

और फूल घास ये सब उग गए है और पीला रंग का --

यह एक फैशन डिजाइ-डिजाइनिंग का एक महल है।

यहाँ पे किसी प्रकार का इवेंट हो रहा है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है।

कुछ पानी में उतर कर के धोती पहन कर के पूजा कर रहे है कुछ कुर्ता पहन --

बहु दिसेया अ परियोजना के साथ ये महल का निर्माण किया गया था इसके सामने एक पेड़ भी है और इसके सामने एक कार भी है।

और साज-सज्जा का विशेष ध्यान रखा गया है एक --